एक आदमी ने फूल की फोटो ली है पर इसका फोकस गलती से ग्रीन पे पौधों पे आ गया है पीछे।

इस फोटो में दो आदमी है एक ने पर्पल कलर की शर्ट पहन रखी है और एक ने व्हाइट कलर की।

टेबल पे दो अ नूडल्स के बॉल है दो कप है जिसमें चाय भी है।

यह किसी अ महिला की फोटो है जो डांस कर रही है डांस जैसे भरतनाट्यम या कथक।

अ एक गाड़ी में सी_एन_जी भरा जा रहा है और एक आदमी मोबाइल पे अपना काम कर रहा है।

राइट साइड पर जो सोफा है उनका कलर येलो है और पीछे सेविंग मशीन भी रख सकती है।

पिलर है जिस पे मोजैक अ पैटर्न से बनाया गया है छत पे एक ट्यूब लाइट रखी हु लगी हुई है।

इसके फर्श में अ ब्राउन कलर के डिजाइंस बन रही है।

यह भी बड़ी खूबसूरत पिक्चर है जिसमें एक सूरज की बहोत अच्छे से फोटो ली गई--

इसमें उसके सारे कलर्स दिखाई दे रही है जो की येलो ऑरेंज रेड है।

और काफी बम बैम्बूस रखी है शायद कोई फंक्शन होने वाला है तीन आदमी इस पिक्चर में दिख रहे हैं।

पीछे एक इलेक्ट्रिसिटी का टावर भी है और गेट इनका व्हाइट कलर का है।

यह पिक्चर में दो ऑटो रिक्शा है जिसका का कलर है ग्रीन और पीला दूसरे का रेड और ब्लैक ।

राइट साइड में अ ताजमहल है जिसमे दो कपिल अपनी फोटो खिचवा रहे है।

जिस पे अ तोरण लगी हुई है फूलो की अ काफी सामान लग रखा है बाहर की तरफ झाड़ू की है।

यह फोटो भी किसी गैस स्टेशन की लग रही है जिसे सी_एन_जी में ऑटो रिक्शा में पीछे ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहा है जिस पे हवा भरी जा रही है सी_एन_जी की --

उनका मोबाइल नंबर दे रखा है प्लस उनकी क्लिनिक की टाइमिंग्स भी लिख रखी है।

जो की साढ़े नौ से दस बजे तक एक बजे तक और साढ़े चार से आठ बजे तक --

ये केक य ब्लैक कलर का है अ इसकी सजावट काफी चॉकलेट से की गई है।

उनकी गाड़ियां तीन सामने खड़ी हुई है घर के और इनके बगीचे में काफी पेड़ है।

और अंदर छज्जे के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं डाइनिंग टेबल जैसा लग रहा है और इसके ऊपर क्रीपर प्लांट और टंग रखा है।

इस चो अल पीले कलर का है उधर एक बाइक भी खड़ी है और दो लाल बेंचेज खड़ी है।

और अह न ये नदी तक जाने के लिए ब्लू कलर का प्लेटफार्म भी है।

अ आसमान में थोड़े बादल छाए रखे हैं और पेड़ भडे परे हरे भरे हैं।

अ राइट साइड पे दो आदमी है एक नीचे बैठा हुआ है और एक उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है शायद।

इस जगह की छत का कलर अ मिक्सड है जैसे ग्रीन ब्लू व्हाइट अ और इसको लोहे से बनाया गया है।

यह बड़ी सुंदर फोटो है जिसपे बादलों की बड़ी खूबसूरत पिक्चर दिखाई दे रही है।

एक पहाड़ की सीरीज दिखाई दे रही है छोटे छोटे वाले पहाड़ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं काफी --

दीवार पर अ एक ए_सी है सी_सी_टी_वी कैमरा ऊपर छत पर लगा हुआ है।